चारो तरफ पहाड़ है पेड़ है पौधे है हरियाली है यहाँ जंगल है जंगल में बहुत बड़ा जानवर रहते है तरह तरह के जानवर रहते है।

दोनों बच्चे है लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे है एग्जाम लिख रहे है ।

और तरह-तरह का यहाँ फल फल है ये आदमी बेचते है आदमी लेने के लिए भी आते है।